य ओ एक बड़ी सारी हवेली है औ काम चलरियॉ है।

कन्ने भी एक छोटो पौधों लाग रहयो है दो-तीन इन्ली साइड में लग रहया है एक इन्न लागर्यो है गेला म बोलो सारो घास फूस उग रहयो है उँली साइड म भी उग्ग रही है कन्ने पत्थर सा क पड्या है भाटा सा क पड्या है बड़ा-बड़ा --

घना करा पौधा लाग रया है निचे की छाया भी दिख रही है र निचे घासो भी लाग रयो है ऊपर हु आसमान भी काला र धोला कलर का होरया है ह र निचे उँली साइड म साफ पड्यो --

एक हॉस्पिटल है जेगो नाम है शिवम् अस्पताल ऐरंग आगे लिख रा के शिवम् अस्पताल में आपका स्वागत है नीचे एक पर लिख रखयो भामाशा--

दूसरे पर पूछताछ तीसरे पर ओ_पी_डी ऊपर भी इहा का नाम लिख राखी बाहर नई एक लुगाई बैठी है सीसे पर पोस्टर सो चेप रखियो है।

नीचे तिरंगा को निशान हे र भगतसिंह का छोटो तिरसान राख्यो है यह चूरू --

यह एक बस है चूरू डीपो देख दूसरे शीशे पर नाम कोनी लिख राखयो शिशो साफ करनारो भी एमे एक है इके के आगे हिसार नागौर जोधपुर नाम की एक प्लेट टांग रखी है।

एलाइनमेंट एंड व्हील वेल्डिंग सेंटर है ऊपर टेंण लगा रहया है जखा पर ईट राखी है।